जहाँ पर सबसे आगे दो बच्चियाँ खड़ी हुई हैं।

दोनों साइड पर कुछ बिल्डिंग बनी हुई नज़र आ रही है।

पीछे एक वॉल है वॉल पे भी कुछ मूर्तियां बनी हुई हैं।

ब्राउन कलर से बना हुआ है बाहर एक दिवार है।

इस पिक्चर में एक शोप नजर आ रही हैं।

वाइट कलर का कपड़ा बाँधा हुआ ह।

सा सामने एक अलमारी बनी हुई है जहाँ पर कुछ बोतलस प्लास्टिक की रखी नजर आ रही है।

गंगा के इस पार मिट्टी का टीला बना हुआ नजर आ रहा है।

साइड में बहुत सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे है।

टेबल के ऊपर एक लपटप रखा दिखाई दे रहा है।